इसमें मुझे एक बड़ा घर भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में लाइट बल्ब चमकता हुआ भी दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे ऑरेंज कलर का साड़ी पेहना हुआ औरत भी दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे बहुत सारा सामान डब्बा में रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

उसमें मुझे लाल रंग का रिबन भी दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे दारु भी दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे अलग अलग किसम का फेस वॉश भी दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे दो छोटी लड़की भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे लाइट बल्ब चमकता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे स्केच पेन भी दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे शैम्पेन भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे रियल जूस भी दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे एक टेबल भी दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे एक ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे बैठने का चेयर भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में चक्र और पोस्टर भी लगाया हुआ है।